जो की घर है घर में खिड़कियाँ भी दी गई है जो दिखने में बहुत अच्छा है बहुत सारे दूर-दूर तक दिखाई दे रहा है टॉवर भी दिखाई दे रहा है घर भी दिखाई दे रहा है।